पेड़ दिख रहे हैं और से रोड निकली हुई है यहां पे लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं और पानी भरा हुआ है।

यह कोई होटल पैलेस जैसा लग रहा है यहां पे काफी सारे सोफे रखे हुए हैं और पीछे--

निकली हुई है जिस में से फोर मिला के चार है ये काफी लोग जा रहे है।

यहाँ पे बाला जी मिष्ठान भंडार यहाँ पे हर प्रकार के मिठाई लड्डू वगेरे घी जलेबी--

यह एक पहाड़ है यहां पे जो लोग दो लोग घूम रहे हैं कुछ लिए हुए हैं बाकी हर तरफ पहाड़ ही है।

एक केश दूर बैठा हुआ हैं और चीनी मिटटी का सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ हैं मघ्घा हैं ।

सजावट भी बहोत अच्छी की गयी है यहाँ पे शादी की सजावट है ये--

और चारो साइड पानी ही पानी है यहाँ पे और दो तीन नाव खड़ी हु--

बगल में कुछ पेड़ छोटे छोटे पौधे भी हैं हरे हरे पौधे हैं और पत्थर बहुत बड़ा है।

यहां पे लोग बैठते भी होंगे आके इस पत्थर में पत्थर का बहुत बड़ा पत्थर है।

यह एक होटल लग रहा है यहां पे काफी लोग मीटिंग के लिए बैठे हुए है।

बैठे हुए हैं पेड के नीचे और अगल बगल चारों साइड से स्कूल बनी हुई है यहां पे स्कूल या कॉलेज कुछ भी है और पेड़ भी हैं।

यह पहाड़ के नीचे का पत्थर के नीचे का नजारा है यहां पे ऊपर पत्थर है नीचे लोग खड़े हुए हैं यहां पे कुछ सेल्फी ले रहे हैं।

और यहाँ पे लोग जुलने आये है ये एक पार्क है और यहाँ और सारे भी खेल खिलोने है बच्चों वाले भी खेल खिलोने --

कुछ रोल बन होता है मशीन रोलिंग मशीन है ये तो--

और ये रोड में खड़े हुए ट्रक है जो एक दुसरे को खीचने की कोशिश कर रहे है।

और पार्किंग एरिया है ये तो यहां पे पार्क हैं सामने पेड़ बोहोत सारे हैं।

यह एक गेट है और सामने चित्र भी बने हुए है जानवर के है और अंदर भी काफी चित्र बहे हुए है डॉग --

की एक बड़ा सा चित्र बना हुआ हैं और गेट लगा हुआ हैं ऊपर से तारे गयी हुई हैं एक खम्मा हैं यहाँ पर--

और सामने से इसमें पीछे केले के पेड़ लगे हुए हैं कुछ लोग यहां पे पूजा कर रहे हैं।

किसी चीज की मशीन है सामने भी मशीन पूरे एरिये में मशीन ही नजर आ रही है।

उपर से कम्भे भी दिख रहे हैं रोड क्लियर है।

यहां पे पानी भरा हुआ है और सामने कुछ मैदान है लब बना हुआ है बैठने के लिए।

पानी पानी दिख रहा है दूर तक पानी पानी दिख रहा है और पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और कुछ नहीं है पानी के अलावा यहां पे।